इस तस्वीर में एक लाइब्रेरी दिख रहा है।

इस ग्राउंड में एक रस्सी लगा हुआ है।

इस ऑफिस में टेबल और कुर्सियां लगी हुई है।

कुआं पर इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है।

चट्टानों में पेड़ लगे हुए है।

यहां पर एक पत्थर में डेंजर जोन लिखा हुआ है।

इस बिल्डिंग पर पंजाब नेशनल बैंक टोरेंट बजाज और फेमिना लिखा हुआ है।

यह एक कप शॉप का तस्वीर है।

इस तस्वीर में जमीन पर घासें उगी हुई है।

इस इमारत में खिड़कियां और एक दरवाजा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में बिजली की तारे भी दिख रही है।

इस तस्वीर में एक खेत दिख रहा है।

इस खेत में धान बोया हुआ है।

इस टेबल पर एक प्लेट रखा हुआ है जिसमें एक नारियल के पत्ता पर ढोसा और चटनी का कटोरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में दो बिजली के खंभे दिख रहे हैं।